यहाँ पे एक साइकिल लगा हुआ है।

यहाँ पे बहुत ही अच्छा घुमने का बड़ा पार्क है।

ये का है मेन्स पार्लर का जो धीरे-धीरे क्या पूरा अच्छे से पार्लर को --